तस्वीर में एक का दृश्य दिखाई दे रहा है।

टेबल पे पानी की बोतले रखी हुई है एवं सड़क व साफ और स्वच्छ दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे इमारतें भी दिखाई दे रहे हैं।

और मैदान के पीछे बहोत बड़ा एक जंगल दिखाई दे रहा है।

और हरे रंग का कालीन बिछाया हुआ है ।

तस्वीर में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो नदी का किनारे वाला हिस्सा में खड़ा है।

एवं फूलों से की गई है और कुछ बैठने की कुर्सियां दिखाई दे रही है।

तस्वीर मे बहोत बड़ा विद्यालय दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक छोटी सी दुकान का दृश्य दिखाई दे रहा है।

और एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

आसमान साफ और नीला दिखाई दे रहा है।

इसका रंग पीला और लाल है।

गलियारे के दोनों और कमरे हैं जिनके दरवाजे सफेद रंग के हैं।

एक बाल्टी रखा हुआ है और फश बिल्कुल साफ और स्वच्छ है।

मैदान के चारों ओर विभिन्न आकार और आकार की इमारतें हैं।

में लाल एल_ई_डी लाइटों से जगमगाता होता हुआ छोटा सा दुकान दिखाई दे रहा है।

और यह तस्वीर एक रात की है एवं कुछ ठेले दिखाई दे रहे हैं और कुछ बड़ी गाड़ियां भी है।

आसमान नीला और साफ है।

तस्वीर में एक फूलों की दुकान का अंतरिया दृश्य दिखाई दे रहा है।

एवं लाल और सुनहरे रंग का उपयोग पंडाल बनाने के लिए किया गया है।

और इसका सड़क बहुत स्वच्छ और साफ दिख रहा है।

और दीवार पर श्रेष्ठ नेत्र चिकित्सालय योर विजन आवर मिशन लिखा हुआ है।

कुछ ट्रेडमिल भी दिखाई दे रहे हैं।